यहाँ पे डॉक्टर इन मरीजों का इलाज करते है और उनको जड़ से ठीक कर कर उन्हे तंदुरुस्त बनाते है।

किराए पर लोग उठा के पैसा लिया करते हैं।

यह तस्वीर एक हॉल की है जो कि ऐंट्री गेट है ये। इसको बहोत अच्छी तरीके से सजाया गया है इनको फूलों से सजाया गया है।

इस तस्वीर में कुछ महिलाए हैं जो कि साड़ी पेहेन के वह इस स्टेज पे खड़े होकर अपना डांस प्रस्तुत कर रही हैं। उनके पीछे एक भगवान की पोस्टर लगी हुई है।

और यह शेरवानी का कलर ब्राउन सिल्वर और इसपे छोटे-छोटे प्रिंट हैं।

जो इग्नु में है और ये बोहोत ही पुराना है पूरा इसका पैंट वेन्ट खराब हो गया है। यहाँ पर कुछ स्टूडेन्ट भी है एक लोगों का ये सर दिख रहा है।